दो व्यक्ति ए.टी.एम. के बाहर खड़े हुए है अंदर अंधेरा सा है।

सुबह का समय है सूरज उग रहा है एक मकान है पीछे।

प्ले ग्राउन्ड मे स्कूल के बच्चे गेम खेल रहे है रंग बिरंगे टी-शर्ट है और सर्कलर बने हुए है नीचे जो की कलरफुल बने हुए है।